एक कंप्यूटर रखा है कोने में कुछ कपड़े रखे हैं।

दूसरी दीवार में एक छोटी अरमाली है जिसके ऊपर कांच और एक बाल्टी रखी है।

जिन्होंने हाथ जोड़े हुए हैं आसपास भीड़ लगे हुए हैं।

थोड़ी ही दूर पे एक मकान है जिसके ऊपर बिजली का खाबा लगा है।

टायरों को स्टैंड में लटका के रखा गया है।

दो कुर्सियां डली हैं सामने एक सफेद रंग की मेज है।

एक गद्दा और कुछ सामान को डिब्बी के अंदर पैक करके रखा गया है।

एक सफेद बोरा रखा है एक पानी की नीले रंग की टंकी है।

नीचे श्री राधे फूलों से लिखा गया है।

स्टेज के नीचे बड़ी बली लाइटें रखी हैं जिनकी रोशनी सामने दीवार पर पड़ रही है।

कमरे के बीचोंबीच सीढ़ियां जा रही हैं।

फर्श पे हरे रंग की कारपेट बिछे है।

कोने में एक मशीन रखी है जिसकी तार लटक रही है बिजली का बोर्ड है।

चादर बिछाया गया है जिनको फूलों से सजाया है।

छत में प्लास्टिक की शीट डाली गई है।

मेन दरवाजे को पर्दों से सजाया गया है।

एक आदमी साइकिल के पास खड़ा है जिसके सामने एक और साइकिल है।

सामने शटर खुला हुआ हैलेकिन कैसी गेट बंद है।

बिल्डिंग के ऊपर इलाहाबाद बैंक का बोर्ड लगा है।

सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं थोड़ी ही दूर--

टाइप मोटरसाइकिल के बगल में एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

बड़ी सी झील है झील के बीच में एक पत्थर है।

पत्थर के ऊपर एक आदमी बैठा है जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं।

सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है बिल्डिंग दो या तीन मंजिला है।

बिल्डिंग की छत लाल रंग की दिवाले भूरे रंग की हैं।

शीशे में दुकान की परछाई पड़ रही है पीछे की दीवार में एक ए_सी लगा है।

बिल्डिंग के सामने तारे गुजर रही हैं।

बिल्डिंग का रंग सफेद और गुलाबी है।

एक बिल्डिंग के बगल में खुड़ा मैदान है।

टेबल और बेंच रखा हुआ है बिजली की तारें हैं।

एक दीवार पे एक सिलेंडर जैसे सामान रखा हुआ है।

छत पे सीमेंट का मसाला डाल रहा है।

दो आदमी नीचे जमीन में बैठे हैं उनके सामने एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा है।

छत को तारों और झाड़ से सजाया गया है।

सामने दो दुकानें हैं एक का शटर खुला है दूसरे का बंद है।

खुली दुकान के शटर के ऊपर एक बोर्ड लगा है जिसमें स्वराज लिखा है सामने खड़े होने के लिए जगह बनाई गई है।

एक काले रंग का कपड़ा स्टेज से नीचे लटक रहा है सामने हरा भरा मैदान है।

एक आदमी स्टेज के बगल में बैठा है।

कुछ सामान को पन्नी के अंदर पैक करके रखा गया है।

इमारत के पीछे भी खुली जमीन है जहां पे पेड़-पौधे लगे हैं।

बगल में एक कांच का दरवाजा है।

उसके बगल में एक रैक है जिसमें चिप्स के पैकेट लटक रहे हैं बिस्कुट रखे हैं पानी की बोतल रखी हुई है।

बगल में एक बाउंड्री वॉल है जिसके चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं सामने एक ऊंची इमारत दिखाई दे रही है।